यहाँ पर एक ए_सी दिख रही है और बोहोत सारे स्कूल के बैग भी रखे हुए है।

और बहुत सारे स्कूल के लकड़ी के बैंचें भी दिख रहे हैं।

वाल में एक ए_पी_जे अब्दुल कलाम की फोटो भी लगाई हुई है।

उपर खुला आसमान भी दिख रहा है।

ऊपर खुला आसमान दिख रहा है बहुत सारे छोटे छोटे स्टॅच्यु भी लगे हुई है।

बाजू में एक टोपी पहन कर आदमी खड़ा हुआ है।

नीले पेट्रोल पंप दिख रहा है यहाँ पर बोहोत सारे झंडे लगाये हुए है।

छोटे बड़े बड़े कारे भी खड़ी हुई है पीछे हिस्से में बड़े बड़े झाड भी है।

यहाँ पर एक बस स्टैंड दिख रहा है।

यहाँ पर बहोत सारी बसें ठहरी हुई हैं।

और बोहोत सारे कुलरे उपर के हिस्से में रखी गई है।

और ये एक जिन का मंजर दिख रहा है।

बहुत सारे फुग्गे भी दिख रहे हैं।

और ऑटो के ऊपर कुछ खोले भी डाली गई है।

ये एक स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर असेंबली चल रही है।

बोहोत सारे लोग खड़े एक लाइन में खड़े हो गए हैं।

यह एक बड़ा सा स्कूल दिख रहा है।

यहाँ पर बोहोत सारी कारे भी खड़ी हुई है ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

यहां पर एक कार पेट्रोल भराने के लिए खड़ी हुई है।

पीछे बोहोत सारी लाइटे दिख रही है एक बड़ा सा ब्लू कलर का बोर्ड भी दिख रहा है।

और एक बड़ा सा कार का शोरूम दिख रहा है का मंजर है।

बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे है ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

बहुत सारे कन्करे भी पड़ी हुए है ये दिन का मंजरा है।

यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

और बोहोत सारे आदमियों के स्टेचू भी रखे हुए है।

और ये एक रात का मंजर दिख रहा है।

और यहाँ लाइटें भी बहुत सारी लगी हुई हैं ऊपर खुला आसमान है ये रात का मंदिर है।

और बहुत सारे झाड़ें भी दिख रहे हैं।

यहा पर बोहोत सारा सोना रखा हुआ है।

ऊपर एक वाइट कलर की ए_सी भी दिख रही है।

और यहाँ बोहोत सारे वाइट कलर की टेल्स बिछाए हुए है और ये दिन का मंज़र है।

नीचे बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

ये एक बड़ा सा पार्क दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ आदमी चल रहे हैं बड़ा सा एक लाईट का खम्बा भी दिख रहा है।

बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है बहुत सारे फ्लावर भी दिख रहे है।

यहां पर बहोत सारे घर और बिल्डिंगे दिख रहे हैं।

ये एक छोटी सी लारी दिख रही है यहाँ पर एक काम चल रहा है।

बहोत सारे लाइटे भी लगाई गई है एक छोटा सा।

पौधा भी रखा हुआ है और वाइट कलर का कुछ।

पोस्टर भी लगाया हुआ है ये एक होटल है।

यलो कलर में एक फाइल भी दिख रही है।